आ बहोत सारा कुछ छोटा छोटा डब्बा दिख रहा है तार इलेक्ट्रीक का सामान दिख रहा है।

और घर में जो यूज होता है वही सब दिख रहा है कुछ एक टेबल है टेबल के ऊपर एक समान र--

और सामने एक पेड़ दिख रहा है एक पेड़ भी दिख रहा है एक छोटा सा अं घर भी दिख रहा है।

तीन चार तो खंबा दिख रहा है। इधर गेट लगा हुआ है।

यहां पर बच्चे लोग बहोत सारा अह बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर दिख रहा है।

साइड में लाल कलर का पर्दा लगा हुआ है और दीवार पे अं कुछ फोटो टंगा हुआ है।

यहां पर एक रोड दिख रहा है रोड के उस पार बहुत सारा दुकान दिख रहा है।

और जेंस भी है बच्चे भी हैं लेडिस भी है बहुत सा पानी का पानी गिर रहा है तो --